कुर्सी लगी हुई हैं ।

राज किशोर चौरसिया भवन बहुत देखने में अच्छा लग रहा है ।

देखने से प्रतीत होता हैकि सन्नाटा छाया हुआ है लेकिन भवन बहुत अच्छे है गाड़ियाँ भी लगी हुई है फील्ड भी नज़र आ रहा है रोड भी नज़र आ रहा है ।

लड़के लोग वहाँ पहुंचे है लग रहा है किताब उताब खरीद रहे है ।

दृश्य लग रहा है ।

लग रहा है कि बढ़ियाँ है ।

अ इसके बगल मे मकान भी बढ़िया है डिजाइनदार मकान है।

बढ़ियाँ से सजाया हुआ है पेड़ छोटा-छोटा पेड़ भी लगा हुआ है ।

छाए हुए है हल्का-फुल्का ।

शॉपिंग करने वाले आते हैं शॉपिंग करते हैं।

बच्चो के लिए चॉकलेट बिस्कुट भी है ।